यहाँ मंदिर है मंदिर अब मंदिर का मेन गेट है यहाँ से लोग जा रहे है कुच्छ आ रहे है।

यहाँ एक ऑफिस है ऑफिस मे सभी अ अपने- अपने काउंटर पर काम कर रहे है साइड मे खुर्सियाँ रखी हुई है।